भिंडी गाजर खीरा शिमला मिर्च बैगन ना ना प्रकार के सब्जी यहां पे है।

यहां पे खाने पीने की व्यवस्था की गई है।

और बहुत सारी दुकान यहां पर है।

यह जगह देखने में काफी सुंदर --

यहां पे काफी सारे पुस्तक मिलते हैं।

यहां एक ईटा का भाटा भी लगाया गया है यह जगह देखने में काफी सुंदर --

यहाँ छोटे-छोटे पत्थर हैं।

यह सब फूल काफी सुंदर दिखाई दे रहे हैं।

इसके बाहर बहुत बाइक खड़ी है।

यहाँ सभी लोग अपने अपने पैसे जमा करने यह ठाणे आते हैं। यह रोड के साई --